जंगल दिखाई दे रहा है।

मुझे साइड में एक जंगल दिखाई दे रहा है।

वॉल में नीला कलर है और ह हरा कर कलर है।

यहां एक ठू दुकान है।

घर के किनारे में लाइट का उजाला देख रहा है।

घर की सामने में फुल लाइन पेड लगा हुआ है हरा रंग का।

की नजारा बहोत सुंदर तरीका से सजावट किया है।

यहां में एक ठो बिल्डिंग है।

इसी में दो दुकान है।

अंदर में दो आदमी है।